एक घर टाइप का दिखाया गया हैजो कि बहुत ही वाइट कलर का पेंट किया गया है उसमें--

एक घर दिखाया गया है घर में बहुत सारे बोरे हैं बोरे में बहुत सारे सामान उमान को--

कुड का ब डब्बा टाइप का बनाया गया है एलुमिनियम का चदरा टाइप का बनाया गया है नीचे पक्का उक्का है कुछ बुक्स के पेपर ऊपर रखे गए --

कुछ लड़के बाइक पर बैठे हुए बैठ के फोन चला रहे कुछ लिख रहे हैं कुछ खड़ --

बहुत बड़ा-बड़ा है आसमानी कलर है लोहे के बहुत बड़े-बड़े से पिलर्स खड़े किए गए हैं एक आदमी--

इंग्लिश में भी लिखा गया हैनीचे गेट है गेट पर भी लिखा गया भारतीय विमानपत्त प्रधान कार्य शोध--

एल_ सी_डी टी_वी है दीवार पर कुछ गाज वाच के पिक्चर्स बनाए गए हैं ग्लोब है।

और निमफर्स पर बहुत सारे मार्बल उर्बल बिछाए गए हैंऔर मार्बल रुबल लगाए गए हैं ऊपर एल_ई_डी लाइट्स है फॉल सेलिंग्स का काम किया गया है एक बच्चों का--

गाड़ी है जो कि खड़ा है बीचों बीच में ब्लू कलर पर है ब्लैक ब्लैक टायर्स --

और साइड में छोटे-छोटे घास वास हरे-हरे हुए हैं एक--

टावर टाइप का बनाया गया है जिस पर कुछ आदमी उदमी खड़े हैं एक बहुत बड़ा सा पेड़ है।

और साइड में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें पंछियों क अम् कुछ पिक्चर --

काफी भीड़ दिखाए जा रहे हैं एक कार है जो कार का रिपेयरिंग किया जा रहा --

इनगो को कारपेट पर भी रखा गया है डम उसकी मूर्तियों को नीचे मार्बल का काम किया गया --

छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक का शॉप दिखाया गया जिसके बाहर पर बोर्ड है बोर्ड पर लिखा गया मोबाइल एंड इ --

च्रदिया गया है लिखा गया है अंदर में एक--

डेकोरेट किया गया है बाहर पर--

गमलो है गमलों में कुछ पौधे-वौधे कुछ बड़े-बड़े पेड़ दिख--

छोटे-छोटे घासवास बहुत सारे दिखाए जा रहे --

और जो बाउंड्रीज की गई है उसके साइड साइड में भी बाहर पर घास वास उग गए हैं कुछ घर वर दिखाए जा रहे --

ग्रिल टाइप का दिया गया है अंदर पे बहुत सारे कांच वांच दिख रहे हैं।

एक रूम का कैबिन टाइप का दिखाया जा रहा हैजिसमें चेयर बहुत सारे हैं एक सॉकेज टाइप का बनाया गया हैजिस पर लैपटॉप रखे हुए बाहर पर बोर्ड है।

और एक साइड में एक और कैबिन दिखाया जा रहा है खिड़की दिखाई जा रही है खिड़की पर पर्दा है लोहे के --

एक रूम टाइप का दिखाया जा रहा है जिसमें बहुत सारे शोकेस दिखाए जा रहे हैंशोकेस में बहुत सारे बुक्स रखे गए हैंकुछ--